यह एक टेक्टर रखा हुआ दिखाई दे रहा है टेक्टर के पास एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है पास में कुछ सुखा चारा रखा हुआ दिखाइ दे रहा है चारे के पास बहोत सारी ईटे--

के पास दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारी किताब रखी हुई दिखाई दे रही है एक औरत चाय पीती हुई नजर आ रही हैं ।

कुछ अंडे रखे हुए दिखाई दे रहे है एक बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है बहोत सारे पैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ पानी की टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है पास में टावर लगे हुए दिखाई दे रहे है आसपास पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ मोटरसाइकिल रखी हुई है दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल पे हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।